ये कोई कबाड़ की दुकान दिख रही है जिसमें एक बड़ा सा तराजू लगा है।

मकान में बैठने के लिए स्टेडियम नुमा जगह बनाई गई है।

जिसमें स्वागत किए दो पेहरेदार खड़े हैं।